इ यहां पर यह एक ईसाइयों का मंदिर है।

इसमें अभी गुलाबी रंग का लाइट एवं नीले रंग का लाइटों से सजा हुआ हैं।

हम यहाँ पर देख सकते है कि यह एक पुलकित हॉस्पिटल हैं।

यह उद्घाटन से पूर्व बहौत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसमें --

गुफा के बाहर में एक व्यक्ति है जो इन व्यक्तियों का फोटो क्लिक कर रहा है।

बेस्ट फंक्शन के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज किया गया है।

यहाँ पर हम देख सकते है की यह एक मेडिकल इस्टोर हैं।

अ स्टेज में नाचते हुए दिखाई दे रही है। स्टेज में नाचते हुए लड़की का --

जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसारम् --

इसके सामने में एक छोटा सा कार और एक ट्रक भी है तथा दो मिस्त्री काम कर रहे हैं।

तथा यहां पर एक टेबल भी रखा हुआ है।

दीवार को ईंट के समान डिजाइन में ढाले गयें हैं और यहाँ पर तो --